बहुत सुंदर घर है जो ब्लू कलर और रेड कलर से रंगा हुआ है बगल में ट्रैक्टर रखा हुआ है जो लाल कलर का है।

यह एक मंदिर है यहां पे एक आदमी पूजा कर रहा है तीन मूर्तियां रखा हुआ है उजला कलर से।

सूखे हुए पेड़ पौधे हैं एक लड़का सीढ़ियों से चढ़ कर आगे जा रहा है जो येलो कलर का शर्ट पहना हुआ है।

हरे हरे बहुत सारे पेर पौधे हैं जिसको लाइट से सजाया गया है लाइट ब्लू और उजला क।

बहुत बड़ा विद्यालय है जिसका नाम कर्पूरी ठाकुर महाविद्यालय है बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं बाहर एक लड़का खड़ा है और एक बाइक भी है।

चंद्रवंशी लिखा हुआ है मोबाइल नंबर एटी थ्री फोर्टी ट्वेंटी फाइव सिक्स्टी सेवेन थर्टी फोर लिखा हुआ है।

हरा हरा घास है ऊपर आसमान है बहुत सारा पेड़ पौधे भी हैं एक आदमी खड़ा उधर देख रहा है।

और रेड कलर का टी शर्ट पहन का और टोपी लगाकर देख रहा है।